और सामने में दो परदे दिख रहे जो कि येलो कलर में यानी डीव येलो व्हाइट में है और एक डीप रेड कलर में हैं।

तो पटरी टाइप का दिख रहा और एक बॉर्डर टाइप का यानी कि सीमेंट का बना हुआ घिरा हुआ है और सामने में जो है खाली पा मतलब खाली जगह जैसा दिख रहा है।

और उनके सामने में एक अह शिवलिंग जैसा यानी शिव जी का मंदिर टाइप का दिख रहा है।

और बगल में फैन है और एक लाइट दिख रहा है और बगल में एक टेबल रखा हुआ है जिसपे कि एक हीटर रखा हुआ है और साइड में एक वाटर का बोतल रखा हुआ है।

यहां पे एक फील्ड टाइप का दिख रहा है जिसमें कि सभी कोई अह अच्छे से रेडी हो के आई हुई हैं और सभी के हैंड में जो है।

अ यहां पे जो है लोहा का बना हुआ दो रेड कलर का पाया दिख रहा है जिसमें की अ यहां पे पूजा किया गया है।